दिखाई दे रहा है बैंक गेट के बाहर में एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने की लोअर पहन रखा है।

और एक सफ़ेद कलर टीशर्ट पहन रखी हुई है पैरो में चपल पहन रखी हुई है और साइड में कुछ पोस्टर लगे हुए है थोड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है बांके पीछे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है मात्र--

रखे हुए दिखाई दे रहे है कई और यहां पर सूखा सूखा से कुछ लकडिया सी दिखाई दे रही है घास सी दिखाई दे रही है।

पत्रा में कारें दिखाई दे रही है जो की काफी अधिक दिखाई दे रहीं है और यहाँ साइड में बिल्डिंगे दिखाई दे रहीं है बिल्डिंगो पे एक दो फ्लोरो पे कपड़े दिखाई दे रहें है सूखे हुए।

यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है साइड में और भी घर दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर अनेक मात्रा में कार खड़ी हु--

दिखाई दे रहा है ग्राउंड में लाइट के खंबो पर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर अधिक बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे है और यहाँ पर ग्राउंड में हरे कलर की दूर्वा लगी हुई है।

प्लेट में पराठे दिखाई दे रहे है पराठे काफी स्वादिष्ट दिखाई दे रहे है पराठे आलू की हे आलू के है जो त्रि त्रिकोणी शेप में है पराठे यहाँ पर तीन चार दिखाई दे रहे है एक के ऊपर एक रखे हुए दिखाई दे रहे है।

ये काफी अच्छी जलेबी दिखाई दे रही है काफी स्वादिष्ट और यहाँ पे एक कड़ाई दिखाई दे रही है जो कि काले रंग की है जो थोड़ी सी कड़ाई दिखाई दे रही है और एक ट्रे में यहाँ पर काफी स्वादिष्ट जलेबी दिखाई दे रही है।

और बहुत दूर तक घर दिखाई दे रहे है बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

मिष्ठान की दुकान दिखाई दे रही है मिठाइयों की यहां पर कई अनके प्रकार की मिठाई है लड्डू दिखाई दे रहे है जो की काफी स्वादिस्ट दिखाई दे रहे है यहां पर --